यह कोई योगा क्लासेस चल रही हैं।

किसी के घर है जो योगा क्लास चलाती हैं। यहां बहोत सारी लड़कियां लेडिज --

यहां बहोत बड़ा मैदान है जो मैदान में--

गार्डन टाइप बनाए गए हैं जिसमें दो बकुला हैं एक राउंडर झोला टाइप कुछ है पाइप है पानी का और--

दुकान के सामने एक बाइक खड़ी है एक साईकल साइकिल है।

एक लड़की है जो बैठके कोई डांस कर रही है।

यह एक दुकान है जो श्री राजेश्वरी बुक लिंक्स --

यह कोई घर है बड़ा सा जो नीले कलर के लाइट से पूरा सजा हुआ है पूरा आगे पीछे--